मुझे यहां पर कुछ कुर्सियां जमी हुई दिख रही हैं।

मुझे यहां पर एक दीवाल दिख रही है मुझे यहां पर कुछ कांच के समान दिख रहे है।

मुझे यहां पर एक खंबा खड़ा हुआ दिख रहा है।

मुझे यहां पर कुछ टेबले नजर आ रही है।

मुझे यहां पर तीन कुर्सियां दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक टेबल दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर बैग कंकाल नीले कलर की चादर के नीचे लेटा हुआ दिख रहा है।

मुझे यहां पर एक दुकान मेडिकल शॉप की दिख रही है।

मुझे यहां पर एक पेन दीवाल में लटका हुआ दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक कुर्सी दिख रही है ऑरेंज कलर की।

यहां पर मुझे व्हाइट कलर की दीवाल दिख रही हैं।

लोगों बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है मुझे यहां पर सिल्वर कलर की कार दिख रही है।